घर है जो ऊपर से बस छत दिया हुआ है उसके नीचे भी घोड़ा है।

इसमें बहोत सारी चीज मिल सकती है आप को जैसे कि यहां पे रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सुंदर लग रहा है दिखने में--

बहुत सारी चीजें आपको मिल सकते हैं।

सब फूल के हैं बहोत सुंदर सुंदर फूल है यहां पे।

यह एक बुक का दुकान है जिसमें--

यह गेट और इसके बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है और आदमी सब कुर्सियां ला रहा हैं।

जेगाह बहोत सारा कुर्सियां लगा हुआ है।